ये प्रोजेक्ट को बड़ी मन और लागाव से कर रहे हैं और इनको गाइड करने के लिए एक यहाँ पर मेम भी खड़ी हुई हैं अगर किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो ये मेम उनके पास जाकर उनको प्रॉब्लम सोल्व करती हैं।

यहाँ पर हमे बहुत सारी चीज देखने को मिल जाएँगी। जैसे की यहाँ पर रस्ट है टोस्ट है कॉर्न भी है। यहाँ पर हमे आटा भी मिल जाएंगे और शैम्पू वगेरा सब चीज रखी हुई है और यह सामान सब पैक्ड सामान है।

इस बस स्टैंड में काफी भीड़ रहती है और यहाँ बहुत सारी बसे अभी खड़ी हैं इस बस स्टैंड में बहुत सारे लोग भी होते है लेकिन आज बस स्टैंड कुछ खाली सा लग रहा है ।

यह एक स्टेशनरी शॉप है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए जो सामान जरुरी होता है यहाँ पर वो हर सामान मौजूद है।

यहाँ हम देख सकते है की एक बच्चा अपने घर के बगीचे में सारे फूलों एवं पौधों को पानी दे रहा हैं यह बच्चा बहुत मेहनती लगता है और ऐसा लगता है की इसे फूल और पौधों से बहुत लगाव है ।

यह चाहता है की इसका गार्डन पूरा हरा-भरा रहे और यह हर बच्चे के दिमाग में आजकल बहुत काम पाए जाते है।